और घर का कलर जो है ग्रीन है।

आदमी है बच्चा लोग और--

टी_वी भी है टी_वी जो तीन ठो है।

और आगे में जंगल है।

और खिड़की भी है और दरवाजा भी है दरवाजा का आगे में--

उन लोग का सामने में ग्रीन पत्ता भी है।

और उसका कलर जो व्हाइट में है और चेयर का ऊपर में जो--

दो पिलो है और आगे तीन ठो पिलो है।

डबी है उसके पीछे में पर्दा भी लगा के हुए है।

और एक ठो बाल्टी भी रखा है।

और एसी भी है व्हाइट कलर है और लाइट चार थी।

जो लाइन के लिए बनाया गया है वो पाइप जो नाइन पीस है और--

वो चेयर का कलर जो है रेड है।

और समोसे ये सब है ब्लू कलर का और समोसा भी है येलो कलर का।

ये पूरा एक तरफ पे दीवार जो ब्लैक कलर का है यहां में कुछ लिख के है और पीछे में--

तीन ठो आदमी से दो ठो आदमी के हाथ में।

आदमी है वो लोग जॉगिंग कर रहे हैं और कोई कोई बैठे हैं और ग्रीन ग्रीन से जंगल है।

वो दिख आदमी लोग जो बैठे थे वो पीछे का दीवार है व्हाइट और ब्लैक कलर --

और ऊपर में जो पेंटिंग करने वाला आदमी लोग वो बैठे।

एक ठो बाइक एक ठो स्कूटी और कोना में है।

एक स्कूटी खड़ा हुआ है वो ब्लैक कलर का है और--

दीवार का अ टीना सब लगा के हुए है वो टीना व्हाईट कलर का है --

ये स्कूटी बना रहा है स्कूटी का कलर जो वाइट और ब्लैक है और इसका बगल में एक्टिव लिखा हुआ है--

और दीवार का कलर जो येलो है।

राइट और लेफ्ट तरफ में पेंटिंग लगा हुआ है और पीछे में भगवान है वह--